एक लेडीज जा रही है फोन पर बात करती हुई--

इस इमेज में द लोकल फूड हम्म--

और वाइट कलर के ए_टी_एम पता हुआ है ए_टी_एम का जो गेट है वो कांच का है।

एक ब्लैक कलर की एक रेड कलर की स्काई ब्लू कलर की वहां एक लड़का खड़ा हुआ है जो--

और मेले बाहर एक बाइक भी खड़ी हुई है मेले का गेट के बाहर बहोत सारे चित्र लगे हुए है।

जो बहोत ही ओल्ड बिल्डिंग दिख रही हैं जिसमें येलो कलर का पेंट पुता हुआ था बहोत साल पेहले--

और उसके पास ही एक जो है दवाखाना का भी बोर्ड आधा दिख रहा है ऊपर से तार की लाइन गई हुई है।

और जो ये पिंक और व्हाइट से पेंट है।

कलर से पेंट है उसका जो गेट है वो कथाई और वाइट अ जो है चकरियां बनी हुई हैं उसपे बाहर जो है रोड बना हुआ है रोड पे बहुत सारे जो है घास उगी हुयी है।

बहुत सारी बाइक बहुत सारी कारें खड़ी हुई हैं और सैमसंग का एक मोबाइल शॉप भी है।

की शॉप है वहां बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं पिंक कलर के वाइट कलर के जो है कपड़े रखे हुए हैं ब्लैक कलर के भी है कुछ--

इस इमेज में आप देख सकते हैं एक बुक स्टॉल लगा हुआ है एक जो है लड़का खड़ा हुआ है दुकान के अंदर से कुछ ले रहा है।

और प्ले ग्राउंड में बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं पास में एक खंभा है खंभे पे बहुत बड़ी लाइट लगी हुई है।

और उसके पीछे एक दीवार है जो वाइट कलर की है।

इस इमेज में आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो जागरण यूनिवर्सिटी है।

बहुत सारे खंबे लगे हुए हैं एक डस्टबीन रखा हुआ है पेड़ लगे हुए है।